यह एक दार्शनिक स्थल है जहां लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं।

और यहाँ भारतीय स्टेट ग्राहक सेवा केंद्र लोक सेवा केंद्र लिखा हुआ है।

सीमेंट की ईंटों से यह घर बना रहे हैं।

निकालने के लिए ये आते हैं यहाँ --

जोक बाहर से आए हुए लोगों की हैं यहाँ लोग --